यहां पर सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे बड़े-बड़े पेड़ है हरि भरी हरियाली और साथ ही में --

ग्रासेस वाला कार्पेट लगाया गया है।

साइड में व्हाइट सोफा सेट टेबल रख रखे गए हैं।

यहां पर खराब बिल्कुल खराब डैमेज गाड़ी को--

यह लकड़ी का घर दर्शाया गया है।

दुकान नजर आती है व्यक्ति यहां पर फ्रूट्स --

यह एक बहोत बड़ा सा व्हाइट कलर के पथरों से बना मंदिर दिखाया गया है।

यह तस्वीर हमें गेम्स रूम की दर्शाई गई है जैसा कि तस्वीर में आप देखी पा रहे हैं।

यहां पर लोग दूर दूर तक स्नान करते नजर आ रहे हैं।

यह एक दवाईयों का मेडिकोस नजर आता हैं यह केमिस्ट की दुकान है जैसा कि तस्वीर में देख पा रही है।

हरि भरी हरियाली पेड़ पौधे सी दिखाई दे रही है यहां पर--

इत्यादि सब रखे गए हैं साइड में यहां पर फ्रिज में--

जरूरतों सामान भी उपलब्ध दिखाई दे रहा--

दिखाई पड़ रहे हैं जैसा कि ये कास्मे--

मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।